और फूल भी चिपके हुए हैं उसके बगल से रास्ते हैं जो एक अ एक लड़का आ रहा है अगल-बगल पेड़ पौधे भी है जो हने हैं बादल सफ़ेद नीले हैं।

के छोटा सा बगीचा है जिस बगीचे में ये फुल लगे हुए हैं और सिंचाई की जा रही है।

और उसके बगल से एक मकान भी बना हुआ है बिल्डिंग है जिसमे दिवालो में सफ़ेद कलर का पेंट पुता हो काले कलर का गेट लगा हुआ और छोटे से लड़का जो सिंचाई क-कर रहा बादल सफ़ेद है।

और टॉप टॉप वैगरह भी बच्चो के टॉप वैगरह भी टंगे है।

एक बड़ी-सी नदी है जिस नदी मे पानी इ भरा हुआ है तालाब आ और कुछ नाव अ नाव खड़े हुए है अगल-बगल पेड़-पौधे भी दिख रहे है बादल नीले है।

एक अगल-बगल मैदान बना हुआ है और बीच से रास्ता जिस रास्ते में एक आदमी जो सामने खड़ा हुआ है और रास्ते में कुछ कचड़े भी फैले हुए हैं।

स्विमिंग पुल बना स्विमिंग पूल है जिस स्विमिंग पूल में पानी भरा हुआ है और अगल-बगल कुर्सियां रखी हुई है बैठने के लिए।